किसी के घर में रिसेप्शन हो रही है उनके घरो में मेहमान आए हुए हैं टेबले हैं कुर्सी हैं घर में अच्छी तरह से सजावट है। --

अच्छी तरह सजावट है पूरी जगह लाइट ही लाइट लगे हुए हैं इंसान हैं।

यह एक हल्की-फुल्की जनरल स्टोर है इनमे कुछ सामाने रखी हुई है खाने-पीने की बूके टंगी हुई है पंखा लगा हुआ बल्ब लगा हुआ और दो रस्सियां है और --

ज्यादा सामान नहीं है इनमे लिखे हुए हैं।

यहाँ पे दो स्कूटर है उनके अगल-बगल में पेड़ है पौधे है एक स्कूटर उनके बगल में एक जनरल स्टोर है ।

ये एक पुराना मंदिर है जिनके अगल-बगल पेड़ ही पेड़ है जंगलों से भरा हुआ है ये एक टूटा-फूटा मंदिर है।